इसमें सलाद के रूप में प्याज तथा खीरा दिखाई दे रहा है।

तथा सामने दो चार पहिया तथा दो पहिया वाहन खड़े दिखाई दे रहे हैं।

इसमें बहुत सारे बटन दिखाई दे रहे हैं और इसका रंग सफेद है।

यह दृश्य किसी पार्क का है जिसमें सामने की ओर कई सारे गमले नजर आ रहे हैं।

इसमें सामने की ओर काफी बड़ी बड़ी तथा कई सारी रेलिंग नजर आ रही हैं।

यह रेलिंग अलग अलग रंग से पेंट की हुई दिखाई दे रही हैं।

सामने कुछ पानी दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ लोग बोटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

तथा इसमें पीछे का बैकग्राउंड नीला नजर आ रहा है।

और ऊपर की ओर डेप्ट ऑफ पोस्ट इंडिया लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

था सामने कुछ बच्चे योगा करते हुए नजर आ रहे हैं सामने ही बच्चों की चप्पले रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

इसमें सामने बहुत बड़े बड़े तारों से बड़ी बड़ी मशीनें दिखाई दे रही हैं।

मोबाइल का नाम श्री राम मोबइल एंड इलेक्ट्रिकल्स नज़र आ रहा है।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

में एक औरत कुछ बता रही है तथा सामने कुछ सीढ़ियां नजर आ रहे--

सामने कई कुर्सियां दिखाई देत रही हैं कुछ कुर्सियां सफेद रंग की हैं तथा कुछ कुर्सियां काले रंग की दिखाई दे रही हैं।

यह दृश्य एक लेडिस टेलर की दुकान का है जिसका नाम सुई धागा लेडिस टेलर है।

यह दृश्य किसी ब्यूटी पार्लर का है जिसका नाम रोज ब्यूटी पार्लर है इसमें सामने की ओर एक बोर्ड लगा हुआ है।

यह झूला पीले रंग का है तथा इसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

मंदिर के ऊपर कई सारे झंडे दिखाई दे रहे हैं।